कंधे पर एक बैग लटका हुआ है वो लोग जा रहे हैं।

ये एक लाइब्रेरी है यहाँ पर बहुत सारे पुस्तकें हैं बहुत तरह-तरह के अलग-अलग--

चश्मा लगाया हुआ है यहाँ पर खड़ा हुआ है।

सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर डाइनिंग टेबल है दो और उसके बाजू में उसके--

और एक इंसान वहां पर कार का सर्विसिंग कर रहा है।

बहुत सारे हरे-हरे यहाँ पर झाड़ मौजूद हैं।

जैसे कि तिरुपति की सरस्वती की लक्ष्मी की माँ दुर्गा की--

और यहाँ पर और भी कई देवताओं के हैं जैसे कि गैया--

बहुत सारे यहां पर पेड़ पौधे हरे हरे दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक रोड है रोड के ऊपर बहुत सारे बस गाड़ियाँ चल रही हैं।

यहाँ पर एक पहाड़ दिख रहा है और कुछ बिल्डिंग है और यहाँ पर कुछ हट है।

यहां पर पर्दा डाला गया है इस कैफे को--

और कुछ बच्चों के लिए खेलने के लिए कार के दो गाड़ियां हैं।

यहां पर एक रोड है रस्ता है यहां पर कुछ गाड़ियां जा रही है।

ये जो गाड़ी है यहां पर बेळगावी महानगरपालिके--

और एक यहाँ पर टू व्हीलर स्कूटी रुकी हुई है और यहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर एक ट्विल्स बोलकर एक शॉप है ।

और यह एक बहुत ही बड़ा बैंक है और यहां इसके सामने कुछ गाड़ियां खड़ी हो गई और एक इंसान यहां पर खड़ा हुआ है।

जो भी राशन का सामान है यहाँ पर मिलता है।

व्हील्स के ऊपर बैठे हुए दो महिलाएँ हैं।

ये एक जंगल है जंगल मे यहां पर मोर बहोत सुंदर सा खड़ा हुआ है।

और कुछ बैलूंस लगाए गए हैं लाइटिंग से।

और एक टेबल के ऊपर बोतल और ग्लास रखा हुआ है।

यहां पर एक क्लास रूम है और इसमें एक बोर्ड लगाई गई है।